सामने बहुत सारे चॉकलेट रखे हुए हैं।

सामने एक पहाड़ है उस पहाड़ में बहुत सारे घास लगे हुए हैं।

यह एक सैलून है सैलून में बहुत सारे आईना लगे हुए हैं और यह आईने के सामने तीन कुर्सियां हैं।

यहां ऐ_सी भी लगा हुआ है।

यह रेस्टोरेंट का ऊपर में बड़े बड़े अक्षरों में निरामिष होटल अम्बर नाश्ता एवं भोजन लिखा हुआ हैं।

यहाँ एक ठो फोटो में आदमी है।

यह एक मोबाइल स्टोर है मोबाइल स्टोर मे एक शटर दिख रहा है।

बगल में किसी महिला का एक हाथ दिख रहा है।

यह एक मॉल दिख रहा है मॉल में बहुत सारे आदमी हैं।

बगल में एक बिल्डिंग दिख रहा है बड़ा सा--

यह एक ज्वेलर्स का दुकान है इस दुकान के पोस्टर में महादेव ज्वेलर्स लिखा हुआ है।

अंदर में एक आईना दिख रहा है।

यह बिल्डिंग में बल्ब लगे हुए हैं बल्ब का रंग सफेद है।

यहां जमीन है जमीन में बहुत सारे बालू हैं।

लेफ्ट साइड में एक आदमी ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।